यह एक खेलने का मैदान है यहां पर लाइटें जली हुई है एक पोल खुटा है उसके ऊपर।

एक कार खड़ी है जिसका कलर व्हाइट है रिक्शे का कलर पीला है इसके साइड में एक दुकान है। जिस पर --

इसके साइड में सीढ़ी हैकुछ वाशबेसिंस रखे गए हैं।

ब्ल्यू कलर का है उसके साइड में एक कपड़ा रखा गया है जो कि व्हाइट कलर का है।

यह एक दुकान का व्यू हैं इसके नाम कारमीनगर डायरी डिपार्टमेंट डेयरी पार्लर हैं लिखा हुआ हैं जो की ब्लू व्हाईट कलर से लिखा गया है।

लड़का जा रहा हैजिसने ब्लू कलर का शर्ट --

एक मोटरसाइकिल में दो लड़के बैठे हुए हैं।

खिलौने लाया गया है यहां पे कुछ पिचकारियां रखी हुई है जो कि रेड ब्लू ब्लैक कलर की हैं।

ड्रैगन वाला भी खिलौना है। जो की ऑरेंज कलर का है।

यह एक घर का दृश्य है इसके घर का कलर व्हाइट है।

इसके रेलिंग पर ब्लू कलर किया गया हैं इसके साइड में एक और घर है जिसके ऊपर कपड़ा रखा गया हैं।

बहुत सी आदमी बैठे हुए हैं। कुछ लरकिया खड़ी हैं।

एक आदमी है जो कि व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है रजिस्ट्रेशन के साइड में एक--

जिसने ब्लू व्हाइट कलर का गंजी पहना हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पे बहुत सारी कुर्सियां रखी गई है।

एक पंखा लगाया गया है।

यह एक कपड़ों का दुकान है इसके ऊपर स्पार्की लिखा गया है।

ब्राउन कलर की इस पैंट पहनी हुई है। इसके।

जिसमें रेड कलर और वाइट कलर का दीवार अलग खड़ा किया गया है।

ये गाड़ी खड़ा है एक ट्रांसफार्मर है कुछ गाड़ियां खड़ी हैं एक कार खड़ी है।

यहां पे एक गाड़ी को धोया जा रहा हैगाड़ी का कलर व्हाइट हैइसके--

कंबल अह लगाया गया है इसके साइड में एक बेंच

है वहां पे एक बैग रखा गया है जिसका कलर ब्लैक है।

सारे कपड़े लटकाए गए हैं जो की रंगीन कलर है।

उसके सामने त्रिदेव हॉस्पिटल है जिसपे बिल्डिंग का कलर ब्लू है इसके गेट का कलर ब्लैक है।